मुझे इस पिक्चर में कब कपाट दिखाई दे रही है।

मुझे इस पिक्चर में आसमान दिखाई दे रहा है। मुझे इस पिक्चर में पेड़ दिखाई दे रहा है।

मुझे इस पिक्चर में दो कप एंड ट्रे दिखाई दे रही है।

मुझे इस पिक्चर में ढोलक दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस पिक्चर में बहुत सी ज्वेलरीज दिखाई दे रही हैं।

मुझे इस पिक्चर में आसमान दिखाई दे रहा हैं।

मुझे इस पिक्चर में आसमान दिखाई दे रहा है। मुझे इस पिक्चर में गेट दिखाई दे रहा है।

मुझे इस पिक्चर में कुछ लोग बस में चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस पिक्चर में एक डोर दिखाई दे रहा है।

मुझे इस पिक्चर में एक व्यक्ति दिखाई दे रहा हैं मुझे इस पिक्चर में एक पेड़ दिखाई दे रहा हैं।